अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत भी है सब कुछ ठीक-ठाक है यहाँ पे बहोत प्यारा लग रहा है।

और अच्छा खासा दिख रहा है और बहोत सुन्दर लग रहा है जगह भी --

बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में खूबसूरत है सब कुछ ठीक-ठाक है और यहाँ पे बहोत सड़क है अच्छा खासा सड़क है ।

घास पत्ते अथि है और झाड़ है बहोत अच्छा लग रहा है ।

और सब अच्छा लग रहा है देखने मे और सुंदर भी है सबककुछ ठीक-ठाक ही है ऊपर से बहोत सुन्दर लग रहा है देख रहा है बहोत प्यारा लग रहा है जगह है--

और प्यारा भी लग रहा है जो की बहोत अच्छा दिख रहा हैसबकुछ छोटा सा लग रहा है यहाँ का जगह भी बहोत सुन्दर है।